के बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे है सामने तीन गाड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की है जिनमे कांच लगा है।

इसके आस-पास दो बोर्ड लगे हुए है ऊपर की तरफ बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसपर सुलभ सौचालय स्नानागार लिखा हुआ है ।

यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है पेट्रोल पम्प पे दो लोग खड़े दिखाई दे रहे है पेट्रोल पम्प नीले तथा सफ़ेद कलर का है ऊपर छत--

जिसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है बाहर बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है पीछे एक मोटर साइकल दिखाई दे रही है और चारो तरफ अँधेरा अँधेरा दिखाई दे रहा है।

निचे वाइट कलर का फर्श दिख रहा हैऊपर वाइट कलर का छत हैं और वाइट लाइट जल रही है पीछे एक वाइट कलर का दिवार दिख रही है जिसमे बहुत सुन्दर पेंटिंग नज़र आ रही हैं।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे आरोग्य अमृततुल्य लिखा हुआ है दुकान काफी अंदर से बड़े दिखाई दे रहै है।